और एक साथ बैठे हैं।

कपड़े हैं इसमें एक नीले रंग का है सफ़ेद रंग का है लाल रंग का कपड़ा है।

इन तीनो के ऊपर हेडलाइट्स भी लगी हुई हैं।

वह अपने काम से आए होंगे।